यह नदी में नाइ बिया बहुत बड़वन नाई बिया किनारे किनारे नाई बिया| बरहज का नदी ह|

एगो स्कूल ह स्कूले पे गेट ह दुनो और से बड़ी बडवन गेट लागल बा लाल हरियल में रंगल बा पियर बा एगो बतख बैठल बा लड़की बिया।

बारिश भइल बा एन्ने पूरा गाडी चलत बाड़ी स शहर ह देवरिया क और गाड़ी बड़ी स टेम्पू बा |

उठे दिन का मकान ह कपड़ा रेगनी पे बांध के टांगल बा दुकाने में कुछ ना लउकता इ तनी सा खुलल बा त शटर बंद बा त ना लउकता और इ लाल हीटिंग में --

बहुत भारी बाटे। कई तला मकान बाटे। बहुत सुन्दर लागता एके कलर से रंगल बा और गेट लगावल बा जय हिन्द जय भारत लिखल बाटे और ये --